बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं बस लाल कलर के दिखाई दे रहे हैं आटो प --

टेबल छोटे छोटे रखे हुए दिख रहे है मैट बिछा हुआ दिख रहा है बहुत से कपड़े रखे हुए दिखाई दे रहे --

मिट्टी दिखाई दे रहा है बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं झोपड़ी भी दिखाई दे रही है।

और उस घर का बड़ा सा गेट भी दिखाई दे रहा है गाड़ी भी खड़ी दिखाई दे रही है ।

बॅट रखे हुए दिखाई दे रहे है बव बॉल रखी हुई दिखाई दे रहे है बहुत से लोग खड़े दिखाई दे रहे है।

कुछ आदमी खरीदते हुए बुक्स दिखाई दे रहे हैं ।

पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं कुछ पेड़ छोटे-छोटे दिखाई दे रहे हैं कुछ बड़े से दिखाई दे रहे हैं और सारे हरे दिखाई दे रहे हैं ।

भी दिखाई दे रही है मिट्टी दिखाई दे रहा है मिट्टी लाल कलर की दिखाई दे रही है उस मिट्टी पे छोटे-छोटे पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं पौधे --

कुछ फील्डिंग करते हुए दिखाई दे रहे कुछ बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे है दो बै बॅट्समेन खेलते हुए दिखाई दे रहे है।

बड़ा सा गेट भी दिखाई दे रहा है कुछ पर्दे भी दिखाई दे रहे हैं पर्दे लाल कलर के लगे हुए दिखाई दे रहे हैं बाहर एक --

सोता हुआ दिखाई दे रहा है और --

घर दिखाई दे रहा है घर के बाजू से रेलिंग दिखाई दे रही है उस रेलिंग के बाजू से --

मकान के सामने एक कार खड़ी है कार लाल कलर की है और एक कार सफेद कलर की है उस मकान के सामने एक रोड --

फिर सामने एक टैक्टर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है एक ऑटो दिखाई --

सफेद कलर की है उस पे बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं।

जैसा की मै देख पा रहि हू एक गुफा दिख रहा है गुफे में अ बहुत सारी घास दिख रहि है घास --

मकान में बहुत से गेट दिख रहे हैं एक गाड़ी भी बाहर खड़ी हुई देख पा रहे हैं और --

घर दिख रहा है घर के सामने एक मेट बिछा हुआ दिख रहा है मेट हरे कलर का दिख रहा है बहुत से बच्चे बैठे हुए हैं और --

कलर की हरे कलर की दिख रही है बहुत से लोग दिख रहे हैं बड़े-बड़ी मशीनें भी दिख रहा है ।

उमर भी दिखाई दे रहा है और छोटा सा गांव --

टीचर भी दिखाई दे रही है ।

जैसा कि मैं देख पा रहे हैं एक भारी सा जंगल है जंगल हरे कलर हरा है ।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक शादी हॉल है शादी हॉल के बाहर बहुत सी गाढ़ा --

लगे हुए हैं फूल लगे हैं बहुत से मेट बीछे हुए हैं बहुत से लोग दे --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं एक दुकान है दुकान के बाहर --

बहुत सी गाड़ियां खड़ी हैं एक ऑटो भी खड़ा दिखाई दे रहा है और बहुत से लोग भी दिख रहा --

एक ऑटो खड़ा है एक स्कूटर खड़ा है कार लाल कलर --